तस्वीर मे हम देख सकते है। यहा पर हमे एक रोड दिखाई दे रही है। रोड पे हमे ट्राफिक लाइट दिखाई दे रही है। यहा पे हमे कुछ लोग बाइक चलाते कुछ लोग स्कूटी चलाते दिखाई दे रहे। यहा पे एक बाइक चलाता आदमी दिखाई दे--

नीचे कुछ छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहे। यहाँ पर हमे पानी दिखाई दे रहा है। हमे बेंच दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमे कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है। यहाँ पर हमे झाड पौदे दिखाई दे रहे है। खुला आसमान भी दिखा--

यह कुछ महिला बैठी हुई दिखाई दे रही है जो की सब्जी बेचते दिखाई दे रहे है। यहा पर एक महिला दिखाई दे रही है इसके हाथ मे हमे लाल बैग और मास्क पहने दिखाई दे रही है उसके पल्से भी दिखाई दे रही है।

ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन दिखाई दे रहे यहा पर हमे अह खुर्ची पर बैठे लोग दिखाई दे रहे है दो लोग बैठे है यहाँ पर टेबल पे कॉफी दिखाई दे रही है यहाँ पे हमे काँच के दरवाजे दिखाई दे रही नीचे फर्श दिखाई दे रहा।

मुर्गा दिखाई दे रहा है। यहापे हमे रोड कुछ जगासे टूटी दिखाई दे रही है। यहा पे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसकी छत दिखाई दे रही है। आसपास और भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहा पर हमे घंपा दिखाई दे--